मुझे एक पार्क नजर आ रही है जिसमें कई तरीके के --

सिटीक्स में हार्टस लगाए गए है उसके सीधे में मुझे एक काली स्कूटी नजर आ रही है।

आसमान भी थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है यहां से पोधै लगाए गए हैं यहाँ सिर्फ पोधै हैं जोकी कुछ पिले भी --

इस गाड़ी की परछाई जमीन पर आ रही है पीछे से दूसरी गाड़ी भी है।

इस बोर्ड पर स्माइलीज और आइस क्रीम्स बनाकर है नीचे से आइसक्रीम के पोस्टर लगा के--

मुझे दूल्हा दुल्हन नजर आ रही है दुल्हन को लाल लहंगा लगा के है और बहुत ही घनी--

जो बैंगल्स भी लगा के है इस दुल्हन ने अपने हाथ से दुपट्टा ऐसे रखा है दूल्हे ने अपना हाथ पीठ पे रखा --

स्लाइडर रखे गये है एक स्लाइडर के ऊपर एक लड़का आ रहा है साइड से ग्रिल भी दी गई--

सड़क पे बसें खड़ी की गई है एक बस का नाम पिंकी है।

जिसके नीचे दो आदमी है यहां से और एक बड़ी बस खड़ी है।

घास काफी घनी हुई है पीछे से पौधे भी है पौधों के पीछे--

कुछ क्रॉस में ब्लू लगाया गया है ये एक स्कूल नजर आ रहा है।

ये गाड़ियां सफेद ग्रे रेड कलर की है पीछे से पौधे भी है पीछे से एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी--

मोटरसाइकल्स भीं रखें गए थे सड़क के उस साइड से एच_डी_एफ_सी बँक --